यहां मोटरसाइकिलें खड़ी हैं।

यहां बहुत सारे बच्चे तालाब में नहा रहे हैं और बहुत सारे ऊपर भी बैठे हैं।

चाबी पाने ड्राम पड़ा है।

और रंगीले रंगीनें झंडे या पर्दे लगे हुए हैं।

यहां बहोत सारी गाड़ियां खड़ी है।

और पार्क भी दिखाई दे रहा है और यहां फोन का वो भी लग रहा है।

ए बहोत बड़ी दुकान दिखाई--

यहां एक ट्रैक्टर खड़ा है।

समान ठीक करने की जैसे मोटरसाइकिल ट्रेक्टर ऐसी दिखाई दे रही है।

ये कोई कंपनी सी दिखाई दे रही है।

ऊपर सूरज छिपा हुआ भी दिखाई दे रहा है मेरी झाड़ी झुडियां भी दिखाई दे रही है।

दे रहा है यहां पे एक मोटर साइकल भी--